और काफ़ी ज्यादा भीड़ है बहुत सारा भीड़ है और बहुत लोग जेन्ट्स है और एक लेडीज है ।

कितना सुन्दर टमाटर है और यह बहोत खुबसूरत लग रहा है टमाटर देखने में हरा-हरा अच्छा लग रहा है है।